देख सकते हैं मंदिर है पुराना मंदिर यहां तीन मंदिरे दिखाई दे रही है।

सोलर लगा हुवा नजर आ रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है।

आप देख सकते हैं बहोत बड़ा नदी है।

एक आदमी के हांथ दिखाई दे रहे हैं।

आदमी के हाथ में एक फूल दिखाई दे रहा है सूखे हुए पत्ते गिरे हुए निचे दिखाई दे रहें।

बोहोत सारे खम्भे हें लोहे का पाइप है।